और बहोत से लोग काम करते हुए नजर आ रहे है और यहां पर कुछ--

और आ इंसान ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सोफे सेट नजर आ रहे हैं बहोत सारे दरवाजे नजर आ रहे हैं खिड़कियां नजर आ रही है कर्टनस नजर आ रहे हैं।

पौधों के गमले नजर आ रहे हैं कुछ फ्रेम्स नजर आ रही हैं एक लैंप नजर आ रहा है एक बहोत बड़ा फोटो नजर आ रहा है।

और बड़ी बड़ी विंडोज भी नजर आ रही है।

व्हाइट कलर के पत्ते नजर आ रहे हैं और कुछ--

यहां पर एक आदमी नजर आ रहा है जिसने मास्क लगाया हुआ है।

हां संदूक भी नजर आ रहे हैं एक डोर नजर आ रहा है।